कुर्सी भी रखी हुई है और एक फोटो स्टेट की दुकान भी दिखाई दे रही है और एक एंट्री गेट भी है यहां पर औ --

यह बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

दो सुंदर सुंदर गेटीव दिखाई दे रहे हैं और पोस्टर भी लगे हुए हैं छोटे और बड़े।

एक बोर्ड भी लगा हुआ है और यहां पर बहुत सारी बाइके भी खड़ी है और अंदर जाने के लिए भी गेट दिखाई दे रहा है यह देखने में--

यह देखने में बहुत सुंदर लग रहा--

यह एक अ मकान की तस्वीर है और इसमें बहुत सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं और--

यह एक जमुना की तरह बहुत बड़ी नहर दिखाई दे रही है।

रास्ता भी दिख रहा है और यहां पर घर भी बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। कुछ खेत में खड़ा है।

यहां पर दो गाड़ी भी दिखाई दे रही है और कुछ खंभे भी और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। यह देखने में बहुत सुंदर लग रहा है।

यह एक ऑटो की दुकान सी दिखाई दे रही है यहां बहुत बहुत--

बाईके भी खड़ी हैं और कुछ बैठे हुए हैं।

कुछ यहां पर हरे भरे पौधे भी खड़े हुए है छोटे बड़े।

और कुछ दीवार पर तार भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एक बड़ी सी विंडो भी दिखाई दे रही है।

बहोत रंग की सजावट हुई है फूलों से भी सजावट हो रही है।

सारे कपड़े भी टंगे हुए हैं टी शर्ट भी दिखाई दे रही है यह एक मॉल की तरह दिखाई दे रहा है अंदर भी कुछ--

और ऊपर से पहाड़ों की ओर और यह देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और यहां पर कुछ बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और काफी सारे आदमी घूमने के लिए आए हैं।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

यह देखने में एक हॉल की तरह दिख रहा है और यहां पर बहुत सारी चेयर रखी है चेयर का कलर रेड कलर का है और बहुत सारी व्हाइट कलर की लाइटें भी लगी हुई है और यहां पर एक जेंट्स भी खड़ा हुआ है और--

पंखे भी बहुत सारे लग रहे हैं।